यहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और रात हो रही है।

जो कि नीचे बैठे हुए हैं मैटो पर।

यहां पर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की गई है।

यहां पर इसकी फोटो खींची गई है।

यहां पर बहुत सारे फूल पड़े हैं जोकि पीले और सफेद रंग के हैं।

बीच में ही दो बाल्टीया पड़ी हुई हैं और थोड़े से व्यक्ति भी आस है पास में हैं।

यहां पर हरे रंग के पेड़ भी है और बहुत रस है।

वहां पर एक औरत खड़ी हुई है यहां पर कुर्सी लगी है।

यहां पर एक दुकान है जहां पर की--

यहां पर नीले और सफेद रंग के गुब्बारे भी लगे हुए हैं।